यहाँ पर नदी दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत सारि पत्थर है और कही पर सुखी जगह पड़ी हुई है।

यहाँ पर सामने एक जेन्स खड़ा हुआ है जिसने हाथ मै कड़ा पहना हुआ है और ऊँगली मै अँगूठी है गले मै कुछ है।

यहाँ पे कुछ कलरफूल सेप बना कर रखे हुए है पेपर के जैसे सफ़ेद है।